देख सकते हैं यहाँ पे जॉन जी का मोबाइल दुकान हैं और ये उसी का घर हैं देख सकते हैं।

आनसर है अंगूर है केला है देख सकते है बहुत सारा यहाँ पे और ये भाई साहब फल ले रहे है देख सकते है बहुत ही ताजा-ताजा फल है और इसमें बहुत ही सारे यहाँ पे इकठ्ठा और यहाँ पेड़ बगैरा बहुत हैं हरा-भरा--